एक बड़ा सा रोड है जिस पे बहुत सारी दुकाने है। शटर लगे हुए है ऑरेज कलर के लाल कलर के बो अ शटर लगे हुए है।

घर बने हुए है आस पास पिंक कलर के खंबा है लोहै का।

--पड़ी हुई है बहोत ज्यादा तबेले में ऊपर चादरें है लोहे की एक पेड़ है लगा हुआ है बीच में पेड़ से सीढ़ी टिकी हुई है।

घास है घास में पानी का फूव्वारा लगा हुआ है फुल लगे हुए है गुलाबी कलर के पत्ते लगे हुए है।

आ लाइटें लगी हुई हैं कांच लगा हुआ हैं फर्नीचर लगा हुआ है लाइटों के छोटे छोटे बल्ब लगे हुए है सफेद कलर के बल्ब है।

सामान रखा हुआ है बहुत सारा चीज़े टंगी हुई हैं।

लोहे का गेट बने हुए हैं सीडियाँ बनी हुई है चीज कि दुकान लगी हुई है घर है दो तीन मंजिला का घर है गाड़ियां खड़ी हुई है ब्लू कलर का गेट बने हुए हैं।

सड़क है सड़क पे एक आदमी चल रहे है एक आदमी बाइक पे जा रहा है उसके पीछे बेग टंगा है।

दूर-दूर तक लोग बैठे हुए है।

हर जगह बड़ा सा खेत है सड़क है।

मंदिर है लाल कलर का और गेट लगा हुआ है उधर एक मंदिर बना हुआ है और पेड़ लगे हुए हैं आस-पास छोटे-छोटे खम्बे हैं।

'' बड़ा सा एक स्टेज बना हुआ है जिसपर एक पोस्टर लगा है फ्रैशर्स का डेक लगा हुआ है कुर्सी लगी हुई है चेयर लगी हुई है। ''

तालाब है तगाड़ियाँ पड़ी हुई हैं उलटी नाव है किनारे पे।

एक डॉक्टर के मास्क लगा हुआ है एक के गले में मशीन लगी हुई है इंजेक्शन पड़े हुए बहुत सारे जा जानवर के इंजेक्शन लगा रहे है।

बर्थडे पार्टी हो रही है और बच्चें तैयार हैं कपडे़ नए-नए पहेने फेरोके लाल कलर कि पिंक कलर की ऑरेंज फुग्गे हरे फुग्गे सफ़ेद फुग्गे --

एक बड़ी नदी है उसके अंदर एक शीप हैदो मंजिले की शीप है जिसपे एक छोटी सी नाव भी दिख रही हैं तलाब के अंदर व्हाइट कलर की है।

बिल्डिंग है बड़ी सी खिडकियाॅं बनी हैं छोटी-छोटी सी जगह-जगह और मलबा साफ़ करने वाली मशीन है मलबा पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा इटो का साइकिल खड़ी हुई है गाड़ियाॅं बनी खड़ी हुई हैं।